और कुछ घरों में काफी सारी लाइट्स भी ऑन जल रही है।

एक लाइट का खंभा दिखाई दे रहा काफी सारी वायर्स दिखाई दे रही हैं यहाँ पर कुछ बाउंड्रीज दिखाई दे रही है और काफी सारी झाड़ियां दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पर हमें एक जिम दिखाई दे रहा है जिम में हमें लाइट्स दिखाई दे रही है और हमें जिम में दो व्यक्ति --

यहाँ पर हमें एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है ग्राउंड के पास ग्राउंड में काफी सारे खम्बेस लगे हुए है यहाँ पर हमें एक कैंप दिखाई दे रहा है कैंप के अंदर --

यहां पर ग्रीन कलर से पेंट किया हुआ हॉल दिखाई दे रहे जहां इ-रिक --

यहां पर हमें कुछ घास दिखाई दे रही है जो की खेती करी हुई है यहां बीच में एक बोर है बोर से काफी प्रेशर से --

यहाँ पर हमें हॉस्पिटल का रिसेप्शनिस्ट रिसेप्शन रिसेप्शन दिखाई दे रहा है रिसेप्शन के --

यहाँ पर हमें एक बड़ा-सा गेट दिखाई दे रहा है गेट में लोहे के गेट्स लगे हुए हैं और चारों तरफ बाउंड्रीज की हुई है और दोनों और --